ऊपर में ट्यूब लाइट्स भी लगे हुए हैं।

इंसानियत भी दिख रहे है।

इस तर इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा कमरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां भी है।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

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

ब्रिज में बहोत सारी स्ट्रीट लाइट भी लगे हुए है।

ऊपर में दो बड़े बैनर लगाया गया है।

बालू के ऊपर तीन इंसान भी है।

ऊपर में ट्यूब लाइट्स का फैन भी लगे हुए हैं।

कमरे के अंदर टेबल और स्टूल्स भी रखे गए हैं।

दीवार में एक फोटो फ्रेम लगाया गया है।

गैरेज का छत टीन से बना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक सैलोन दिख रहा है।

दीवार में बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं।

टेबल के ऊपर बहुत सारे टिश्यूज़ रखे गए है।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा खुला मैदान दिख रहा है।

और दाई तरफ सफेद और हरा रंग का बैलून लगाया गया है।

घर मे बहोत सारी खिड़कियां भी लगे हुए हैं।

एक कैमरा भी लगाया गया है।